बहुत बड़ा पहाड़ यहाँ पे दूर-दूर से लोग आते हैं इस पहाड़ को देखने के लिए न हरा-भरा है और हरा ही हरा है ।

यहाँ पे बहोत सारा गाड़ी रखा गया है ऑटो बहोत सारा है यहाँ पे बहोत सारा पेड़ है और दो ठो व्यक्ति है।

अब ब्लैक कलर कार है । इस कार को बहुत ही --